इस फोटो में एक प्लांट लगा हुआ है जिसमें बहोत सारे सुंदर सुंदर रेड कलर के फ्लार्स लगे हुए हैं।